पिछे की दीवार में कुछ एक छोटी सी रोशनी आ रही है।

यह रूम मुझे एक डॉक्टर की रूम लग रही है।

बहोत बड़ी सोफा लगी हुई हैं तीन चार टेबल लगे हुए हैं।

सामने मुझे एक मकान दिख रही है जिसमें एच_डी_एफ_सी बैंक के शाखा नजर आ रहा है।

कुछ समान रखे हुए हैं एक घड़ी भी है जो दीवाल पे टंगी है।

पीछे में एक मकान दिख रहा है मकान लाल कलर का है।

शटर उठे हुए हैं नीचे में एक बोर्ड है उसपे प्लस का निशान दिया है।

ऊपर से लाल कलर किया हुआ है आसमान भी दिख रहे हैं जो आसमानी कलर में है।

टेबल बना हुआ है जो ब्लू कलर का है। उपर में रेड कलर के कुछ है।

चार पांच खंबे भी हैं नीचे का फर्श मिट्टी का है।

कुछ लोग हैं जो खड़े हैं ऊपर से एक लाइट सिस्टम का डीजे लगा हुआ है जिसमें बहोत सारी लाइट आ रही है।